पक्का का घर है दो शेटर है दो दुहारि है।

ताला बंद है एक गाड़ी पार हो रहा है।

खड़ा हुआ है जो हाथ में दूरबीन लिया है बैग लगाया है।

एक व्यक्ति उन लोग स कुछ पूछ रहा है जो मास्क लगाया है टोपी भी पहना है भी।

बहुत सारा लेडिस जेंट्स हैं मछली का मार्केट है मछली है।